और एक अंदर बैठा हुआ है कुछ तस्वीरें लगरी हैं।

पर्दा टंगा है फैन है ऊपर टेबल लैंप है ऐ_सी है पर्दा--

एक दीवार पर तक्ता लगा हुआ है फुटपाथ बना हुआ--